घर बना हुआ बना हैआसमान है जमीन है और लोहा का टेंट --

और यहाँ पे फ़ीनडि लगा हुआ हैं इसको टोर के ले जाके उसको फुलाएंगे और बधियाँ से बेचेंगे इसको मार्केटिंग मे ये बस जस्ट मार्केटिंग लगेगा इसका कोई लेडीस आदमी इसको टोर रही हैं।

--टमाटर को मार्केटिंग में बेच रहे है बेचने के बाद उसको लेजा के सब्जी-वब्जी पकाएंगे बहोत ही बेहतरीन लग रहा है और ये शानदार है।

मंदिर है महामाया मंदिर है और ये अंबिकापुर का है और ज़मीन दिख रहा है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहा है इंसान दिख रहे है गाड़ी दिख रहा है।

और यहाँ पे मिरचा का खेती होता हैं मिरचा के खेती होने के बाड़ उसे बेचने जाते हैं।

फूल हैं लाइट हैंदीवाल हैं कुर्सी हैं कुर्सी पे पर्दा हैं।

--और यहाँ पे सिर्फ मछरी का ढेरी लगता है आप देख सकते है यहाँ पे सफाई करके बेचते भी है ऐ और यहां पे ऐ-ऐ टेंट दिख रहा है।

कहना चाहिए की खरीद के उसको सबजी बनाया हैं और सब्जी के साथ उसको मस्त फ्राइ करके खाया जाता हैं एक नंबर का चीज हैं बैंगन--

यहाँ पर मछली बेचने के लिए रखाया गया हैं ये मस्त दुकान लगेगा इसमें मछली को वहाँ से खरीद के लाके यहाँ बेचने के लिए।